योगा मैट की खड़ी होकर है एक पैर से खड़ी है एक पैर को फोल्ड करके और एक दोनों हाथों लंबे कर कर योगा कर रही है।

है दाल चावल तेल मसाले सारे सामान हैं यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी सादे रंग का शर्ट पहनकर खरीद रहा --